आर_डी_एस प्लाजा है स्टेज है अदभुत कला है हरा-भरा सजावट है एक दो तीन कुर्सी बहुत-सा गोल करके लगल है।

बालू है गिट्टी है ईटा खटाल है। पिलर है हरा सा मकान है उसमे ईगो दुगो तीनगो एगो कीमारी है दुगो खिड़की है बगल में अलबेस्टर का घर है।